यहाँ पर एक जाली दिखाई दे रही है। जाली के ऊपर एक पक्षी दिखाई दे रही है।।जाली के अंदर एक पक्षी दिखाई दे रही है।

इसके ऊपर पानी के कुछ बॉटल भी दिख रही है। वहा कुछ बंदे भी दिखाई दे रहे है। आगे की तरफ एक बड़ा सा आइना लगा है। ऊपर कुछ झालर बंधी गई है। ऊपर भी कुछ बॉटल दिख रही है।

ऊपर एक एंगल निकाला है। उस लड़के ने चस्मा पहना है। वहा मिट्टी वहा पर कुछ कचरा पड़ा है।

यहां पर एक दुकान देखनी है। इसका आदमी दो मोटरसाइकिल दिख रहा है। वायर ]

दुकान के ऊपर बोर्ड लगा है। दुकान के अंदर एक आदमी--